यहाँ पे काफी बड़ा माउन्ट एवरेस्ट जैसा दिखाई दे रहे है जो की काफी लंबा है।

यहाँ पे एक पेट्रोल पंप की तरह कुछ दिखाई दे रहा है और यहाँ पे जैसे की गाड़ी वगैरा भी खड़ी है और --